उसके बगल में कोटक महिंद्रा बैंक भी दिखाई दे रहा है जो की रेड कलर के बैनर में लिखा हुआ है।

दिखाई दे रहे है और इसमे तीन-चार ए.सी भी दिखाई दे रहे और कुछ पंखे भी दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है तीन लोग खड़े है और तीन लोग बैठे हुए नजर आ रहे है और इसमें कुछ मछलियाँ भी दिखाई दे रही है।

पोल भी दिखाई दे रहा है जिसमे बहोत सारी तारे बाँधी --

के बाहर दो हरे कलर के छोटे-छोटे बॉक्स भी दिखाई दे रहें हैं और बौ --

दुकान के सीलिंग में बहोत सारे बैलून हुए है बैलूनो का कलर पिंक कलर की है येल्लो कलर की है और व्हाइट कलर की है।

डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं और उसमें बहुत सारे कुछ भी दिखाई दे रहे हैं नम --

इस तस्वीर में बहोत सारे हरे-भरे पेड़-पत्ते नजर आ रहे है जिसमें बहोत सारी रोशनियाँ दे रही है प्रकाश की।

फूले नजर आ रही हैंजो की व्हाइट कलर की है और पिंक कलर की है।

इस तस्वीर में एक बड़ी-सी सड़क नजर आ रही है और सड़क के किनारे बहुत सारे फूलों की दूकान हैं और फलों की दूकान है।

इस तस्वीर में एक पतला सा रास्ता दिखाई दे रहा है जो की एक गार्डन का है और उसके बगल में भरे-भरे पेड़-पौधे दिखाई दे रहें हैं।

इस तस्वीर में एक सड़क नजर आ रही है सड़क पे सामने ए --

तस्वीर में एक रोड दिखाई दे रही है और रोड के सामने एक --

बांधे गए हैं और उसके बगल में एक वाइट कलर की मकान दिखाई दे रही है।

कीर्ति नगर मधेपुरा लिखा गया है और बोर्ड के ऊपर दो लाइटे भी बड़ी-बड़ी लगायी गई है।

इस तस्वीर में एक बहोत बड़ा मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है उसमें नीचे पत्थर लगे हुए और छोटे-छोटे घांस उगे हुए।

इस तस्वीर में रनवे दिखाया गया है और उसपे एक प्लेन भी दिखाई दे रहा है प्लेन का कलर व्हाइट कलर का है और प्लेन के आगे चार खिड़कियां भी नजर आ रही है।

और बगल में सोफा भी लगाव गया है जिसमे एक कुशन भी दिया गया है जो की डिजाइन दार है और सामने एक लट --

इस तस्वीर में एक छोटा सा गोडाउन दिखाई दे रहा है जिसमें श्री शिव प्राइवेट लिमिटेड लिखा गया और नीचे वर्क शॉप लिख दिया गया।

इस तस्वीर में एक हारमोनियम नजर आ रहा है जो की पिंक कलर की है और ऊपर में व्हाइट और ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है।

और ऊपर में पटरे लगाए दी गए है जिसमें लाल कलर का दिखाई दे रहा है और नीचे में बहुतसारा कूड़े-करकट दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ी सी दीवाल नजर आ रही है और दीवाल के नीचे दो गेट नजर आ रहें हैं जो की ब्राउन कलर की है और दीवालों पे रेड कलर से श्री शिव प्राइवेट लिमिटेड आई.टी.आई. लिख दिया गया --